और यहां बहुत हरियाली है। हरियाली से हमें स्वच्छ हवा मिलती है जिससे हम हमारी जिंदगी भी बढ़ती है। लंबी होती है।

और इससे हम घर को भी सजा सकते हैं फूल से अच्छी खुशबू भी आती है।

और यहाँ पे सारे रिश्तेदार उनसे मिलते हैं गिफ्ट देते हैं और उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। यहाँ पे वरमाला भी होता है यहाँ पे एक दुसरे को दूल्हा दुल्हन माला पहनाते हैं।

ये एक नदी है और नदी में हम देख सकते हैं एक जहाज है छोटा सा।

केक को हम अलग-अलग अवसर पर काट के खुशियां मनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं जैसे बर्थडे हो गया।

और ये कार शादी के बाद जब दुल्हन जाती है ससुराल तो उस कार में बैठा के भेजा जाता है।

तो ये वही कार है और ये काफी आकर्षक लग रहा है देखने में।

फीमेल का अलग होता है। मेल का अलग होता है। तो यहां पे मरीजों का रखा जाता है। उनका इलाज किया जाता है।

और यहाँ पे कुछ लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं रीसेप्शनिस्ट से और रीसेप्शन हर होटल पे होता है। जहाँ पे हम पूछताछ कर सकते हैं। इन्क्वर्री कर स --

ये कई सारी जलेबियां है यहां पे और जलेबियों को बनाने में देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में उससे ज्यादा मजा आता है।

दुनिया में और खास कर के नेस कैफे की कॉफी बहुत अच्छी होती है पीने।

तो यहां पे लोग आते हैं अपनी पसंद के हिसाब से टीवी देखते हैं सेलेक्ट करते हैं।

और महिलाओं के गर्मी के ठंड के यहां पे हम खाने की सामान भी खरीद सकते हैं।

यह एक फुटबॉल ग्राउंड है और इसमें दो टीम्स होती हैं।